बाहर के ओर काफी सारे बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके अंदर खाने का सामान दिखाई दे रहा है।

यहां पे लकड़ी के मदद से कवर्ड बनाए गए हैं जिसके अंदर काफी सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पे बाहर की ओर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे लोहे की मदद से गेट बनाए गए हैं।

यहां पर लकड़ी के मदद से टेबल बनाए गए हैं।

यहां पे बगल में एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक रोड का दृश्य बना हुआ है जहां पे नीचे की गई है।

यह एक बाउंड्री का दृश्य बना हुआ है।

यहां पे बगल में काफी सारे लाइट --

यहां पे लकड़ी के मदद से टेबल बनाये गये है जिसके ऊपर कार्टून रखें हुये है जिसके उपर एक बोतल भी रखा हुआ है।

इसके अंदर लकड़ी के मदद से कवड बनाये गये है इसके अंदर काफी सारे सामान रखे हुए है।